इस चित्र में अं हरे-भरे ग्रास दिखाई दे रहे है और काफी अ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं आते-जाते लोग नज़र आ रहे हैं और बच्चो के खेलने के खिलौने दिखाई दे रहे हैं और बहोत अच्छा नज़ारा है धन्यवाद।

और आसमान की परछाई पानी में दिखाई दे रही है धन्यवाद!